यहाँ लोग अ दूर-दूर से आते हैं घूमने के लिए यहाँ अच्छा पार्क में हर एक जगह से लोग आते हैं घूमने के लिए।

परफेक्ट रहता है और यहाँ हम सारे --

एक फ्रूट का केला है ठेला है जहाँ पे ये फल मिलता है फल मे जैसे सेब हो गया संतरा हो गया संतुला हो गया।

यह एक ए_टी_एम मशीन है जिससे की हम अपना रुपया निकालते हैं यहा पे भी वहां एक पोस्टर लगा है जो प्रचार के थ्रू लगा हुआ है।

एक सिटी का शो रूम है। जहाँ पर हम मनपसंद सिटी लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।

साइकिल हम अपनी को चलाते एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए यह साइकिल का हम यूज़ करते हैं जहाँ चारों और से बिल्डिंग है यहाँ पे एक साइकिल लगा हुआ है और कुछ लोग बैठे हुए हैं।